ये एक होटल सी लग रही है लेकिन मुझे पक्का मालूम नहीं है की ये एक होटल ही है बाहर कुछ अम्म--

कुर्तियों के ऊपर टेंट भी लगा हुआ है और इसके बाहर लिखा है आयकार विभाग और ऊपर कुछ बलून्स भी लगे हुए हैं।